जो कि पत्‍थर का बना हुआ है और इसके पीछे काफी बड़े और घने पेड़ हैं जो कि हैं।

बोनट को ओपन किया हुआ है और कारीगर इसे देखने लगा है ।

शर्ट पहनी है जबकि दूसरे डॉक्ट जिसने गले में स्टेथोस्कोप गले में लटकाया हुआ है नीले रंग की शर्ट डाली हुई है ।